शेड लगा हुआ है शीट का शेड लगा है ताकि धूप और पानी से बचाव हो।

क्यारियां बना के रख दी गई है इस पर सब्जियां लगाई जाएंगी जिससे पैदावार काफी बढ़िया से होंगे।

इस फोटो के अनुसार यह एक घर है।

जैसे आसपास औ क्या कहना चाहिए?

और बड़ा सा एक हमारे सामने--

पीछे रैक में भी पूरी इनाम से भरी गई हैं सामने एक नाचती हुई महि--

यह एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप हैं।

यह एक मैदान है। इस मैदान को सीमेंटीकरण किया गया है अंदर से।

यहां एक लोकल जो कॉलोनी का बगीचा दिख रहा है।

सभी के सभी टी_वी जो है एल_जी कंपनी के हैं।

यह जो स्कूल है माता सुंदरी पब्लिक स्कूल काफी बढ़िया स्कूल है।

यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट जो है बाहर में आंगन में --

कह सकते हैं कि गार्डन में यहां पे बहोत सारी टेबल्स रखी हुई है।

यहां पे बहुत सारे मेंस कलेक्शन दिख रहे हैं।

मॉडल वगैरह ये लोग जो बना कर के लाए हैं।

यह जो फोटो है ये एक मेगा मार्ट की है।

सामने बहोत सारी खाने पीने की चीजे हैं जो यहां पे सामने मौजूद हैं।

सामने जो हैं बहुत सारे खंभे वगैरा लगे हुए हैं।

यह एक एयरपोर्ट का तस्वीर है जो काफी बढ़िया दिख रहा है।

और पार्किंग वगैरह यहां पे नहीं है ये जो है मेन गेट के बाहर में होगा।

एक सामने झुका हुआ है दो सामने तीनों सामने हैं।

रंग के मैट में ले के बैठे है एक पर्पल एक जामुनी एक पिंक --

यह जो फोटो के अनुसार या कोई शादी का सेटअप लग रहा है सामने सफेद रंग में गद्दा और--

और फूल भी बहोस खूबसूरत है पानी भी शांत है।

सामने जो स्टेज है रेड कलर में डेकोरेट किया गया है।